चैनल का गेट लगा हुआ है जो कि काले रंग का दिख रहा है।

इस पिक्चर में कुछ भैंस बंधी हुई नजर आ रही हैं।

इस पिक्चर में एक सैलून नजर आ रहा है।

और कुछ लाल रंग की कुर्सियां पड़ी हुई दिख रही है।

एक मेज भी रखी हुई नजर आ रही है।

कुछ गेंदे की मालाएं लगी हुई दिख रही हैं।

और कुछ गेंदे की मालाएं लगी हुई हैं मूर्तियों पर।

इस पिक्चर में बिल्डिंग बनी हुई नजर आ रही है।

इस पिक्चर में एक ऑफिस बना हुआ नजर आ रहा है।

जिस पर कुछ आदमी और कुछ औरतें भी बैठी हुई हैं।

दो सफेद रंग के काउंटर रखे हुए दिख रहे हैं।

जिसमें खिड़की और दरवाजे बने हुए दिख रहे हैं।

और कुछ कुर्सी मेज पड़े हुए हैं जो कि काले रंग के दिखाई दे रहे हैं।

एक मेज और दो कुर्सियां भी दिख रही हैं।